और अलमारी में ढेर सारा जींस और टॉप टी शर्ट ये सब रखा हुआ है।

चारों तरफ पोल लगा हुआ है और पोल में ढेर सारे लाइट भी बंधे हुए हैं।

यह एक जंगल का दृश्य है इस जंगल के चारों तरफ में पेड़ पौधे लगाए हुए है और यहां पर ढेर सारा लकड़ी गांजा हुआ है।

जहाँ लाइट लगा हुआ है और वहां पर एक दो तीन पेड़ भी है।

ग्राउंड के चारों तरफ में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।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

यहां पर एक टेबल भी लगाया हुआ है।